इस पार्क में एक जाली दिखाई दे रही है जिसके पीछे बोहत सारे जानवरो की आकृतियाँ बनी हुई है और यहाँ पर बोहत सारे पेड़ भी दिखाई दे--

इस चित्र में हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति नज़र आ रही है यह पत्थर पर बनी हुई एक कलाकृति है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है और ये फूलों सजी--

मंदिर के पीछे हमें एक जगमगाता हुआ आसमान दिखाई दे रहा है और इसके आसपास काफी हरियाली भी नजर आ रही है इसके आगे का फर्श बहुत सुंदर बना हुआ है।

इस मंदिर मे हमे सफेद सफेद चार पाँच पिल्लर नजर आ रहे है इस मंदिर में फूलों से सजावट की हुई है और पर्दो से भी सजवाट की हुई है।